और एक जो लड़का है वो इधर उधर देख रहा है।

थोड़ा और कुछ छोटा सा पीछे मकान भी है एक दो गाड़ी भी उधर पीछे भी खड़ी है।

और एक बड़ा है जोकि एक व्यक्ति आगे चल रहा है जिसके गुलाबी कलर का शर्ट है और कुछ उधर --

अह पटरी मतलब कि बेड़ी पर भी बैठे हैं और कुछ एस_बी_आई का लोगो भी दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का टी शर्ट पहना है और आगे दूर कहीं थोड़ी बिल्डिंग टाइप घर भी दिखाई दे रहा है।

और नजारा भी काफी ठीक है नीचे कुछ उधर भी लड़के हैं दूर तरफ कुछ हरियाली भी है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

सामने कुछ एयरटेल का लोगो भी है और कुछ गाडे हैं सब्जी के फल फ्रूट के जहां पर एक दो व्यक्ति भी खड़े हैं और एक आदमी संग --

यह किसी दुकान के अंदर का फोटो है जिसमें बहुत सारे कलर के डब्बे हैं और ऊपर में नीकोन का लोगो भी है।

सही से ठीक करने का काम कर रहे हैं और कुछ उन्होंने रेड कलर का पहना है।

म्मम और भी काफी कुछ ये प्लेटेनी का नाम भी लोगो भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में किसी गैरेज का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर अलग अलग प्रकार की और अलग अलग कलर की गाड़ियां दिखाई दे रही है।

काली सफेद भूरा कलर की गाड़ियां हैं।